और बहोत सारे लोग यहाँ आते-जाते रहते हैंऔर पूजा करके चले जाते हैंऔर यहां पर --

ऊपर वो एक बाजार है जो कि रोड की साइड पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगे गए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं ।

यहाँ पर नट बनाये जा रहे हैं यहाँ बहुत ही बड़े-बड़े नट बनाये गए हैं और यहाँ पर बहुत ही --

यह एक रूम है जो कि रूम अच्छी बहुत अच्छी दिख रही है और यहां पे दरवाजे के --

यहाँ एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी गाड़ी लगे गए हैं जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है बहुत सारी गाड़ी लगे गए --

तो यहाँ पेड़ लगे गए है एक गाड़ी इधर लगे गए है और यहाँ पर बहुत सारे भीड़ रहते है और यहाँ पर रोड में --

गंदगी भी बने रहते है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते-जाते रहते है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादे गंदगी --

यहाँ पर एक दिशा में पेंटिंग बनाये गए हैं उ स्कूल के दीवार यहाँ पे एक टेबल रखे गए हैं और यहां पे बहुत सारे नट --

पेड़-पौधे भी बहुत ज्यादा है और पेड़ यहाँ पर बहुत ग्रीन ग्रीन दिखते रहते --

ऊपर और नीचे कुछ आदमी काम कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं सुता खरीद के भी जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं ।

और यहाँ पर कोच भी है जो की यहाँ ट्रैंनिंग दिए गए हैं लड़के को और यहाँ पर --

बहुत ज्यादा गंदगी फ़ैले हुए नहीं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं ।

और यहाँ पर दो लड़के बैठे हुए है नाव पे नाव बहुत ज्यादा गहरा पानी है इस नदी में और यहाँ पर बहुत अच्छी गन्दी-गन्दी मछलियां भी रहती --

एक घर बने हुए हैं जो पी --

और यहाँ पर गाड़ी आर-पार जाते रहते हैं और यहाँ का गाड़ी बहुत हार्ड है और बहुत ही अच्छी बात है की यहाँ बढ़िया-बढ़िया कपड़े मिल --